जिस झील के चारो तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और यह पहाड़ काफी सूखे भी हैं और कुछ पहाड़ इनमे से काफी हरे-भरे भी हैं।

यहां पर कुल मिलाकर के छे पहाड़ मुझे नजर आ रहे हैं। और बादलो का भी यहां पर नजारा बहोत ख़ूबसूरत दिखाया गया है।

जिसका नाम शशि है। इस दुकान का नाम शिव कॉम्टेक इंटरप्राइजेज है। इस दुकान में --

तो इस फोटो में हमको दिखाया गया है एक बैंक्वेट हॉल जिसमें बहोत खुबसूरत-खुबसूरत फूल लगे हुए हैं।

हरे पेड़ बोहोत बढ़िया और खूबसूरत हैं इनमें से एक पेड़ में --

आमने-सामने बहोत सारे पत्थर पड़े हैं और छोटे पत्थर भी हैं और एक नदी के ऊपर एक छोटी सी --

एक पेड़ भी लगा हुआ है इस बिल्डिंग के सामने काफी जगह खाल्ली छूटी हुई है और यह बिल्डिंग बहोत बड़ी और खूबसूरत नजर आ रही है।

गहरी है इस गुफा के अंदर बहोत सारे लोग लाइट चमका रहे है और --

यह पइयाँ है वह बहोत बड़ा है और जो आगे वाला पइयाँ है वह काफी छोटा है।

तो दोस्तों इस फोटो में हमको --

जो बिल्डिंग मुझे नजर आ रही है उसमे --

तो इस फोटो में हमको काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं जो की डांस कर रहे हैं और इस फोटो में --